इस दृश्य में एक किराना जनरल इस्टोर दिखाया गया है.

जिसमें टोटल छह लड़कियां हैं.

एक हाथ मे कटा हुआ सीर है इस रूम में ऐ_सी भी लगा हुआ है.

इसमें एक चबूतरे के अंदर एक पेड़ हे.

और साइड साइड में छपरी लगाया हुआ है.

कुछ साइड साइड से बिक भी रहा है.

जिसमें आगे में तीन गाड़ी खड़ा हुआ है एक गाड़ी पे हेलमेट लगा हुआ है.

क्योंकि अंदर में मुर्गी भी है साइड में मुर्गी का चारा भी है.

एक आदमी उसका बकेट में चारा निकाल रहा है। दो बाइक लगा हुआ है।

लकड़ी का दरवाजा भी लगाया हुआ है वॉल पुट्टी भी किया हुआ है जिसका कलर पिंक है.

निचे बहोत बड़ा एक टावर है। साइड में है बहोत सारा जंगल भी है। उसके पीछे में बहोत बड़ा बड़ा बिल्डिंग भी है।

जोके अच्छा सा सीसा मे पैक किया गया हे ज्वेलर्स अच्छा से कि हुई हे.

जोकि एक फ्रिज रखा है एक यहाँ हैंड ट्रौली भी रखा हुआ है।

एक लैपटॉप बिलिंग के लिए रखा है।

जो की अल्ट्राटेक सीमेंट का है.

विक्रेता का नाम कुशवाहा ट्रेडर्स हे एक बाईक भी खड़ा हे.

इस दृश्य में कोई फंक्शन हो रहा है.

कपड़ा का दुकान को दिखाया गया है.

इस पूरे सीन में वाशिंग सेंटर हैं.

इस दृश्य मे सीडी का फोटो दिखाया गया हे.

जिसमे बहोत बड़ा एक ट्रांसफार्मर हे.

उस ट्रांसफार्मर से बहुत सारे तार बड़े बड़े पोल पे गया हुआ है.

बहुत अच्छा से फिनिशिंग दिया गया है लैब का।

जिसमें पिछे में एक घर भी है और दो गाड़ी भी लगे हुए हैं.

ये दुकान एक राशन की है जिसमें चार लोग राशन लेने आए हुए हैं और--

गेट भी है लाइटिंग भी किया हुआ है.

एक दो आदमी एक पिलर को अच्छे से धर कर उसमें मसाले को भर रहे हैं।